creating new content types पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे नया content type बनाना और content type में फिल्ड्स को जोडना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर का उपयोग कर रही हूँ आप अपने पंसद का कोई भी वेब ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं
अपने website को खोलें जिसे हमने पहले बनाया है
हम जानते हैं कि builtin content types क्या है कुछ custom content types को बनाते हैं
content type का परिचय याद करें
हमने body में सब कुछ समान करना नहीं सीखा था
अब हम सीखेंगे कि custom content type को कैसे बनाना है
हम एक events content type बनायेंगे जो कि दुनिया के सभी drupal events को tracks करेगा
सबसे पहले paper पर बनाते हैं कि इस content type के लिए हमें किन fields को capture करने की जरूरत है
इसे drupal में बनाने से पहले सभी नए content types के लिए यह एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है
field name field type और purpose के लिए columns के साथ table बनाएँ
सभी drupal nodes के title और body fields है जो default रूप से परिभाषित हैं
event name इस event को अद्वितीय तरह से पहचान करने के लिएtitle field हो सकता है
event description कुछ plain text के विवरण को प्रदान करने के लिए body field हो सकता है
एक event logo event के किसी भी विशिष्ट logo को प्रदर्शित करने के लिए एक image है
हमें date type के event date की जरूरत है जो event के शुरू होने की और समापन की तिथि को दर्शाता है
event की एक अलग event website हो सकती है जो इस content type में प्रदर्शित होने वाला url link है
हम इस tutorial में केवल इन पाँच fields को देखेंगे बाद में हम इन दो fields के बारे में सीखेंगे
प्रत्येक event एक user group द्वारा प्रायोजित किया जायेगा user group दूसरा content type है जिसे हम अगले tutorial में बनायेंगे
दो भिन्न content types के दो nodes entity reference field का उपयोग करके drupal में linked है
एक event topic taxonomy field है जिसका उपयोग विभिन्न keywords के अंतर्गत event को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाता है
अब structure पर click करें और फिर content types पर click करें
यह हमारे दो बुनियादी content types हैं
नीले रंग के add content type button पर click करें
हम अपने नयें content type को events के रूप में दर्शायेंगे
और description में हम type करेंगे this is where we track all the drupal events from around the world
आप अपने अनुसार यहाँ कुछ भी type कर सकते हैं
यह description content type पेज में प्रदर्शित होगा
आप देखेंगे कि drupal इसे machine name देता है यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका named events है
machine name मूल रूप से database में table का name है जिसे drupal कंटेंट के लिए असाइन करता है
submission form settings में title के स्थान पर event name लिखें
publishing options में create new revision पर चैकमार्क करें
इसका मतलब है कि जब हर बार node एडिट किया जाता है तो एक नया version बनाया जायेगा
अन्य settings को छोड दें जैसे वे हैं display author and date information को off कर दें
यह इसके लिए मत्वपूर्ण नहीं है यहाँ कुछ है जो कि प्रत्येक content type के लिए अनुशंसित है
menu settings पर click करें available menus के नीचे सभी checked menu को अनचैक करें
यह कंटेंट editor को हमारे menu structure में कई events को जोडने से रोकेगा
यह सुनिश्चित करता है कि अन्य को हमारे menu item में event को जोडने की अनुमति नहीं है
यदि हम बाद में event को जोडना चाहते हैं तो हम स्वयं ही इसे कर सकते हैं
save and manage fields पर click करें
एक बार जब हमारा events content type सेव हो जाता है तो हम body field देखेंगे
दाईं ओर edit पर click करें और label के स्थान पर event description लिखें
नीचे save settings button पर click करें
हमने drupal में अपना पहला custom content type बना दिया है
इस समय यह काफी सीमित है मूल रूप से title और body जो कि basic page के समान है
हम अपने paper डिजाइन के आधार पर और कई fields जोडेंगे और इसे बहुत ही उपयोगी बनायेंगे
ऊपर add field button पर click करें
select a field type ड्रॉपडाउन में image चुनें label field में event logo type करें
save and continue पर click करें
यदि हम चाहें तो choose file button पर क्लिक करके यहाँ default image upload कर सकते हैं
यदि हम चाहें तो default alternative text जोड सकते हैं
हम प्रत्येक event के लिए एक logo रखेंगे save field settings पर click करें
अब हमें event logo field के लिए सभी settings को set करना है
इनमें से अधिकांश प्रासंगिक हैं और field type पर आधारित हैं
हम अपने content editors के लिए यहाँ कुछ help text या कुछ instructions जोड सकते हैं
हम required field box को भी check कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि content item या node check नहीं है जब तक कि एक event logo जुड़ा है
हम file extensions को बदल सकते हैं जिनकी यहाँ अनुमति है यहाँ bitmap जोडने के लिए recommended नहीं है
file directory default रूप से year और month में भरी जाती है लेकिन हम इसे बदल सकते हैं यदि आवश्यकता हो
उदाहरण के लिए आपके पास इमैज के साथ कई content types हैं
फिर आप prefix events जोड सकते हैं ताकि events content type के सभी इमैजेस एक फाइल directory में हो
drupal हमें इसे अपने अनुसार name देने की अनुमति देता है लेकिन इसके साथ सावधान रहना होगा क्योंकि हम इसे बाद में आसानी से बदल नहीं सकते
हम maximum और minimum image resolution और maximum upload size को भी set कर सकते हैं
इसमें बदलाव करने से पहले ध्यान से सोचें कल्पना करें कि आप 2 या 3 megapixel की इमैज upload कर रहे हैं
आप अपने wysiwyg editor का उपयोग करें इसे कुछ you pixels छोटा करने के लिए
drupal अभी भी 2 megapixel image loads कर रहा है और यह वास्तव में निराशाजनक बात हो सकती है
यह और भी खराब होगा यदि आप अपने mobile का उपयोग कर रहे हैं और data plan से अचानक ही आपने 2 मेगाबाइट download कर दिया है उसे download करने की जरूरत नहीं थी
सुनिश्चित करें कि इमैज upload करने से पहले हमने उन्हें ठीक तरह से set किया है
image का आकार कितना बडा होना चाहिए और image का आकार कितना छोटा होना चाहिए
विशेषत: minimum image resolution बहुत ही महत्वपूर्ण है
यह field बडे image size से छोटा नहीं होना चाहिए जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते हैं
यह drupal को मूल image से अधिक और उन्हें pixilated करने से बचायेगा
अपने maximum image resolution को 1000 x 1000 setup करें
अपने minimum image resolution को 100 x 100 setup करें
फिर maximum upload size 80 kb रखें
drupal image को 1000 by 1000 size में shrink करेगा और इसे 80 kilo bytes बनायेगा
और यदि नहीं कर सकता तो drupal image को अस्वीकार करेगा
यह अच्छा रहेगा कि हम इसे 600 by 600 pixels करें जो कि एक उचित size है
हम enable alt field और alt field required चैकबॉक्स को check करेंगे
फिर save settings पर click करें
अब हमारे पास अपने content type के लिए event logo field है
add field पर क्लिक करके अन्य field को जोडें
add a new field ड्रॉपडाउन में link को चुनें label field में event website type करें
save and continue पर click करें
तुरंत ही हमें allowed number of values निर्दिष्ट करने का संकेत दिया जाता है हम इसको 1 values देंगे
save field setting पर click करें एक बार फिर से यह screen हमें हमारे link field के लिए contextual settings देगा
allowed link type के नीचे हमारे पास options हैं internal links only external links only और both internal and external links
अब हम निर्दिष्ट कर सकते हैं कि क्या हम allow link text को disabled optional या required बना रहे हैं
अभी के लिए हम इसे optional ही रखते हैं और देखते हैं कि यह कैसे कार्य करता है
go बढे और save settings पर click करें फिर से add field पर click करें
इस बार हम date field चुनेंगे
label में event date type करें
save and continue पर click करें
अभी के लिए हम value 1 ही रखेंगे date type ड्रॉपडाउन में date only option चुनें
save field settings पर click करें फिर से हमें contextual settings पेज मिलता है
यहाँ default date को current date में बदलें
save settings पर click करें
add यहाँ जोडने के लिए हमारे पास दो और fields हैं लेकिन हम इन्हें अभी नहीं जोड सकते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
संक्षेप में इस tutorial में हमने नए content type को बनाना और content type के लिए fields को जोडने के बारे में सीखा
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद